और ये घर बहुत ही सुन्‍दर लग रहा है। ये हरे कलर के पेन्‍ट पेन्‍ट से रंगा हुआ है।

इसमे अत्ते पत्ते-पत्ते सब हैं जो कि सब देखने में अच्‍छा लग रहा है। यहाँ कुछ आदमी भी है।

पेड़-पौधेे बहुत सुन्दर लग रहें हैं। रास्‍ता पर आदमी चलता है।

ये लोग किसी डांस के पोजीशन में खड़े है।

ये बच्चा बहुत अच्छा डांस कर रहा है।

ये किसी शादी उदी का फंक्‍शन लग रहा है। ये मैरिज हॉल लग रहा है। यहाँ पर बहुत सुन्‍दर-सुन्‍दर कुर्सी सब --

दीवार है। उसके दूसरे तरफ टीन का घर बना हुआ है। यह गोडाउन है।

गेंहू का ये लगा हुआ है छोटा-छोटा पेड़ सब लगा हुआ है। पानी के नीचे कीचड़-उचर भी है उसके ऊपर एक लकड़ी-उकड़ी भी डाला हुआ है कई सारा --

लोग यहाँ पर कार खराब हो जाता है तो ठीक कराने आते हैं। यहाँ पर एक ब्लैक कलर का कार रखा हुआ है। यहाँ ब्‍लू कलर का एक डिब्‍बा है जिससे तेल या पानी कुछ निकलता है। यहाँ मशीन भी रखीं हुई --

यहाँ पर सफाई चल रही है। ये किसी घर का यहाँ किसी घर का सफाई चल रहा है।